हैलो आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग है जो बहोत सुंदर लग रहा उपर मस्त नीला नीला आकाश है और पास बहोत सारे--

हेलो ये एक मकान के अंदर व्यू है जिसमें पाइप है और ए--

ये बहोत सुंदर लग रहा है और एक टी_वी_एस भी है जो साइड में बगल में खड़ा है धन्यवाद।

चीजें है और दो व्यक्ति भी खड़े हुए हैं और कैरम बोर्ड जैसे कई सारे गेम्स --

बहोत सारे लोग भी हैं यहां दर्शन के लिए और गाने बजाने संगीत जैसे कुछ कर रहें और देखने ही बहोत अच्छा है और पास ही में एक त्रिशूल भी है।

हेलो आप देख सकते हैं ये एक पार्क और गार्डन है।

डॉल और खिलौने जार पुस्तक को कॉपी पेन आदि बहुत सारे चीजे हैं आप देख सकते हैं।

हैलो आप देख सकते है यह एक लड़की है इसके सर इसका हेयर बहोत सुंदर से अच्छे से किया हुआ हैं।

यह देखने में बहोत अच्छे है आप देख सकते हैं दृश्य बहोत अच्छे हैं।